साईड में एक पाईप भी पड़ा हुआ है |कुछ हरी भरी घास --

एक बोर्ड है। खाली मैदान है। कुछ लोग हैं। एक नीली कुर्सी है। कुछ ईंटें भी पड़ी हुई हैं।

यह कोई फैक्ट्री है जिसकी नीली शटर की चद्दर है और एक ट्रांसफॉर्म है। कुछ खंबे हैं। एक बोर्ड है। कुछ खाली मैदान भी है।

इसपे कुछ नीले रंग की गद्दिया है और पीछे भी कुछ लकड़ी का फर्नीचर है कुछ बोर्ड है कुछ फ्रेम है और टाइल्स वगैरा है।

कोई किराने की दुकान है और कुछ सामान रखा हुआ है। कुछ टॉफियां हैं। तराजू है। एक बोतल है। अंडे हैं।

ये एक दो तीन लगभग चार पराठे जिस प्लेट में है उस में कुछ लाइनें भी खींची हुई हैं।

यह कोई गार्डन है जिसमें दो सड़कें हैं और एक लड़का भी खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की पैंट और स्काई ब्लू कलर की शर्ट और रेड कलर के शूज पहन रखें है ।

नीचे कोई ट्रे है पानी की। पीछे कुछ पेड़-पौधे भी हैं।

एक फ्रिज है और अदर कुछ बोत्तले है कोलड्रिक की --